ए एक बड़ा सा पोस्टर भी टांगा गया है यहां पे कुर्सी भी रेड कलर का रखा गया ह--

और एक सूरज का प्रकाश भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे स्टेबलाइजर भी रखा गया हैं।

एक व्यक्ति का शर्ट का कलर व्हाइट है और एक व्यक्ति का पीला कलर है।

और यहां पे एक गेट भी दिखाई दे रहा है जो लोहा का है।

यहा पे स्टेशन का चित्र दिया गया है।

यहां पे नीचे भी लोहे का बिछाया गया है।

और मोटा मोटा तार भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बस का चित्र दिया गया है जो कि बहुत सारे लेडिस और जेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे ऊपर में भी त्रिपाल जीठाया गया है और नीचे में भी त्रिपाल जीठाया गया है।

और बहुत सारे लाइट भी कलर का लगाया गया है।

और एक झंडा भी दिखाई दे रहा है यहां पे मोटा सा वायर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे कंप्यूटर भी यहां पे दिखाई दे या दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहुत सारे पंखे भी लगाए गए हैं।

होल का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

और एक फोनपे का स्कैनर भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे कपड़े भी रखे गए हैं।

पानी भी दिखाई दे रहा है।

एक रेड कलर का लोहा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे छोटे छोटे घास का पेड़ का चित्र दिया गया है।